फोल्डिंग हैं और पेरो मैं नीले कलर की जूते हैं सेकंड वाले इसमें।

शमशान घाट है यहां पानी है इधर पे भी पानी है पेड़ है पेड़ की छाव है।

और जैसे शमशान घाट के ऊपर चार ऐसे हैं सीमेंट का है ये।

ये रानी ओंते बाई का चित्र है इसके हाथ में तलवार है और साइड में ग्राउंड जैसा है और उसके ऊपर रानी ओंतेबाई जी की फोटो है साइड में पेड़ है।

और रानी भाई का पुतला है ये यहाँ रखा हुआ है तो--

तो वैसा भी योगा करना ज़रूरी हैं तो योगा के लिए बैठे हैं पांच छे बच्चे।

ये शादी का लॉन है लॉन में चेयर वगैरह लगी है पेड़ भी है साइड में ब्लू कलर की।

ये एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट मैं आइस क्रीम हैं पिंक कलर के और येलो कलर के और।

इन आगरा की फोटो है चिकन शॉप की चिकन शॉप ।

मुर्गा काटते मुर्गे को पकड़ हुए है साइड मे निकाल रहे है वो मुर्गे।

और बस स्टॉप पे कोई आदमी बैठे है साइड में एक बचा पकड़ के एक आदमी है लेडिज है सलवार सूट पहन के।

लस्सी होटल करके है साइड में यूनियन बैंक करके लिखा हुआ है और साइड में यूनियन ।

ऐड करके लगा हुआ है सैमसंग का इसमें स्पीकर भी है और अ हेडफोन भी है बहुत सारे एक आदमी फोन पे बात करते हुए हैं--

क्यूआर कोड का भी है लगा हुआ ऊपर मे छत है लाइटिंग है ।

एक एक की टीम बनाई हुई है इनकी और अलग अलग खिसके बैठे हुए हैं सब ब्लू कलर के दिखे रहे हैं।

मेंस वियर करके भी बोर्ड लगा हुआ है साइड में और एक गले पर दिखाया हुआ घोड़ा है।

ये कपडे बेचने के होंगे शायद अभी न्यू माल आया होगा दुकान मैं इसलिए वैसे रखे हुए हैं ये कप।

ये बैटरी करके टाइप दिखे लोहे की।

श्री कृष्ण जी के मोटर्स वर्सज़ है हे।

इसे अपन सफर कर सकते हैं और ये हिमाचल कहाँ का है तो नाम तो नहीं दिया है इसमे हिमाचल में लेकिन।